ये एक स्टेशन का फोटो है और यहाँ पर रेल की पतरिये डली हुई हैं।

यह एक रेलवे प्लेटफ्रॉम है और यहाँ पर बेहद ट्रेने आती हैं और ये बोहोत ही ज्यादा खुबसूरत है।